आई_पी_एस_सी एयर फोर्स इंडिया एग्रीकल्चर सारी बहुत सारी बुक मिलते हैं और स्टूडेंट बुक खरीदने जाते हैं जो--

यह एक दूकान है। यहाँ पे राखी मिलते हैं जो हिन्दू का एक बहुत बड़ा पर्व है ऱक्षा बंधन। हर बहन अपने भाई को बान्धते हैं वही राखी है।

यहाँ पे किराना सामान सब्जी अनेक-अनेक प्रकार की चीजे मिलते हैं।